बनी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक ग्राउंड सा दिखाई दे रहा है थोड़ी दूर एक पुलिया पुलिया दिखाई दे रही है।

मो टेबल और कुर्सियां लगी हुई है टेबलो पर बोत्तले रखी हुई है।

बस और खड़ी हुई है दो तीन आदमी दिखाई दे रहे है और पीछे बिल्डिंग सी--

इस इमेज में मुझे एक मॉल दिखाई दे रहा है उस के ऊपर एक पोस्टर लगा है उसपे लिखा हुआ सी ए आर डबल इ आर ।

करियर पि ओ डब्लू इ अर पावर ए एन आई टी ऍम ए ए एल ऊ ऍम आई एन इ --

बी ऐ जेड डबल ए आर बिग बाजार अंदर बोहोत सारे कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे है।

और पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक मोटर साइकिल रखी हुई है एक --

पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।